उन पर कई रंग बिरंगे लाइटें भी लगी हुई है।

लोग वहां देखने आ रहे है।

मूर्ति के अगल बगल कई सारे हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

मैदान पर कई सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यह चित्र दो आइसक्रीम फ्रीजरो का दिखाई दे रहा है जिसका रंग पीले रंग में है।

कॉर्नेटो आइसक्रीम बनी हुई है और वह एक टाइल्स के फर्श पर रखा हुआ है।

जमीन पर बाल्टी बोरा और बोतल भी दिखाई दे रहा है ।

एक लोहे का जग भी नजर आ रहा है।

दो भैंसे खड़े हुए हैं।

कुछ घासे भी रखी हुई है।

यहां एक गांव का दृश्य दिखाई दे रहा है।

कई सारे व्यक्ति अंदर जा रहे हैं।

कई सारे लोहे के रॉड भी नजर आ रही है।

स्टेज की जमीन पर हरे रंग की चादर बिछी हुई है।

यह एक जिम का दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ एक व्यक्ति जिम कर रहा है।